जो कि बहुत लंबे हैं और टाइल्स लगी हुई हैं यहाँ--

पानी में खेल रहे हैं और जो नाव पे सवाड़ व्यक्ति कर रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक क्लासरूम दिख रही है जो कि ड्राइंग बनी हुई है और ब्रेंच लगी हुई है जिसका दीवाल का कलर वाइट है ब्रेंच भी वाइट है।

फोटो में मुझे एक अ दिख रही है और दो बच्चे दिख रहे हैं एक लड़का है जो हेडफोन लगा के खड़ा है।

और ल लड़का पोज़ दे रहा है और लड़की गंजी में है।

और बगल में बिल्डिंग बर बन रही है नाया और बच्चे लोग खेल रहे हैं जो कि एक ब्लैक --

टी-शर्ट में है और एक वाइट टी-शर्ट में है रेड टी-शर्ट में में भी है और एक बाइक से घूम रहा है इधर-उधर।

ओर जो कि दो व्यक्ति एक अ सामान ले रहे हैं एक मोबाइल चला रहा है आप बगल वाले--

और चेयर भी रखी हुई है जिसका ऊपर का दीवाल वाइट है लाइट भी लगी हुई है।

मुझे फोटो में चार लोग देख रहे हैं जो दो ल दो लोग काम कर रहे हैं एक वाइट --

और ती चार लोग काम कर रहे हैं एक फोन चला रहा है व्यक्ति।

जो कि आपस में बात कर रहे हैं जो कि उनका शॉर्ट का कलर वाइट है और पैंट ब्लैक है।

एक एक अ एक जो कि कॉफ कॉफी शॉप है--

और बगल में पोल है और बिल्डिंग का नीचे जो कलर है सो रेड है और उसके बगल में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

आपस में बात कर रहे हैं एक व्यक्ति फोन यूज़ कर रहे हैं एक व्यक्ति ब्लू टी-शर्ट में--

और वाइट सीमेंट से वाइट पैनल से रंगा हुआ है और मूर्ति भी है बहुत--

फोटो में मुझे एक गार्डन दिख रही जो कि बहुत सारे पौधे हैं उसमें गार्डन फूल सब रेड हैं।

इस फोटो में मुझे ए होटल का रूम दिख रही दिख रहा है।

राइट साइड में खड़े हुए हैं और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं ज जो कि गार्डन टाइप मुझे दिख रहा है एक नाड़ियल का पेड़ है।

इस फोटो में मुझे चार कुल चेयर दिख रही है जोकि ऑरेंज कलर में है और चार व्यक्ति बैठे हुए हैं और इंडियन ऑयल का ट्रक भी लगा हुआ है।

और बगल में एक ग्लास है ब्लू कलर का जिसमें दो पंखे लगे हुए हैं और एक टी_वी भी है।

काले टी शर्ट वाले के हाथ में एक फाइल है और मरीज़ सोए हुए हैं जिसमें अ रूम का ग्रा फ्लोर का कलर चॉकलेटी हैऔर वाइट --

और स्टेशन पर ट्रेने अती और तिरपाल रखी तिरपाल का कलर पीला है।

फोटो में मुझे दुकान दिख रही है एक व्यक्ति सामान बेच रहे हैं जो कि कुड़कुड़े--